इस तालाब के अन्दर छोट-बड़ी सभी प्रकार की मछलियां रहती हैं और तालाबों में --

साथ ही पार्टी है। जिसमें लोग साथ ही साथ-साथ --

ये गेट है और यहाँ पर चार ये महल में हर कोने --